नमस्कार panel connections और software interface पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
हम निम्न दिखाना भी सीखेंगे:
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ expeyes वर्जन 310ubuntu linux os वर्जन 1404
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको expeyes junior interface से परिचित होना चाहिए यदि नहीं तो सम्बधित tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ
expeyes junior यंत्र की उपयोगिताओं के बारे में चर्चा करते हैं
यह यंत्र निम्न में परीक्षण करने के लिए उपयोग होता है:
यह निम्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता हैelectricity ध्वनि sound चुंबकत्व magnetism प्रकाश light diode transistors और अन्य
panel के ऊपर terminals से शुरू करते हैं panel चार ground terminals रखता है इन terminals पर voltage zero volt 0 v है
अन्य input terminals पर voltage ground gnd से मापी gnd है
input terminals a1 और a25v से + 5v के बीच voltage माप सकते हैं
बायीं तरफ in1 और in2 terminals 0 से 5v के बीच voltage माप सकते हैं
in1 यथार्थता के साथ 5000 pf pico farads तक धारिता भी माप सकता है
pvs programmable voltage source है यह 125 mv milli volts के निम्नतम अंतराल के साथ 05 volts range में voltage देने के लिए उपयोग किया जाता है और 5 ma milli एम्पीयर तक विद्युत धारा ma सकता है
sine लगभग 4 volts आयाम पर एक नियत आवृत्ति लगभग 150 hz देता है
sen मुख्य रूप से निम्न संयोजक sensor अवयवों के लिए उपयोग किया जाता है
यह 5 volts से जुड़े हुए 51k आंतरिक प्रतिरोधक resistor के साथ एक voltage मापने वाला terminal है
sqr1 और sqr2 terminals 07 hertz से 100 kilo hertz तक आवृत्ति के साथ 0 से 5v की square waves दे सकते हैं
od1 सॉफ्टवेयर नियंत्रण के अंतर्गत 0v या 5v की तरह digital output देता है
mic बाहरी ध्वनि स्रोत से ध्वनि लेता है
ccs का मतलब है constant current source
यह 3 kω kilo ma के एक load प्रतिरोधक resistor के साथ 1 ma milli एम्पीयर विद्युत धारा देता है चूँकि voltage चार volts के नीचे रखी जानी चाहिए
inverting amplifier बाहरी voltages को परिवर्धित amplifier करने में उपयोग होता है यह बाहरी condenser या mic output को परिवर्धित करने में भी उपयोग हो सकता है
यंत्र के साथ कुछ accessories सहायक सामग्री दी गई हैं
accessories की सूची निम्न प्रकार है:
दो silicon diodes
चार 5mm leds
यह expeyes junior का graphical user interface gui है gui को plot window की तरह भी जाना जाता है
plot window के बायीं तरफ हमारे पास input terminals a1 a2 in1 in2 sen sq1 और sq2 हैं
atr whi और अन्य trigger sources waveform को ठीक करने में उपयोग होते हैं
हम atr whi और अन्य trigger sources के बारे में चर्चा आगे आने वाले tutorials में करेंगे
ch1 ch2 ch3 ch4 sliders के साथ plotting channels हैं
दायीं तरफ के channel sliders plot window पर उस वेव को घुमाने में उपयोग किए जाते हैं
a1 पर click करें और ch1 तक खींचें हम नीचे वाले box में connection की जानकारी देख सकते हैं
a2 पर click करें और ch2 तक खींचें हम पहले की तरह connection की जानकारी देख सकते हैं
channel ch2 से fit तक खींचें यह ch2 की voltage और आवृत्ति दिखाता है
ch2 से nml तक खींचें यह fit द्वारा दिखाए हुए display को हटाता है
msec/div milli second/division समय अक्ष axis दिखाता है
volt/div volt अक्ष को दिखाता है
trig level trigger नियंत्रक है
ch2 पर click करें और del तक खींचें यह ch2 को हटाता है
ch1 पर click करें और del तक खींचें यह ch1 के प्रदर्शन को अक्षम डिसेबल करता है
ftr wave का fourier spectrum देता है
setting squarewaves में हमारे पास कुछ input और चेकबॉक्स हैं
इस input box में हम wave की आवृत्ति hertz में बदल सकते हैं
यह phase differencedphi को percentage % में बदलने के लिए है
set pvs = input box में हम 0 से 5v के बीच वांछित voltage की value प्रविष्ट कर सकते हैं value set करने के लिए enter दबाएँ
sqr1 sqr2 और both check boxes आवृत्ति को सक्षम करने में उपयोग होते हैं slider उपयोग करके आवृत्ति बदली जा सकती है
set state check boxes od1 और ccs को नियंत्रित करने में उपयोग होते हैं
measure c on in1 button धारिता capacitance मापने में उपयोग होता है
measure r on sen button प्रतिरोध resistance को मापने में उपयोग होता है
buttons के नीचे हमारे पास python code type करने के लिए command window है हम python code के बारे में आगे के tutorials में चर्चा करेंगे
save traces to button txt फ़ाइल की तरह वक्रों को सेव करने के लिए है
loop check box scan और xmg buttons के बारे में हम चर्चा आगे के tutorials में करेंगे
experiments button परीक्षणों की सूची दिखाता है quit button window बंद करने में उपयोग होता है
ohm मैं यंत्र और इसके interface को उपयोग करके ohm का नियम दिखाऊँगी
इस परीक्षण में हम प्रतिरोधक resistor पर voltage की निर्भरता को दिखायेंगे और ohms का नियम प्रमाणित करेंगे
यंत्र system से जोड़ा गया है
इस परीक्षण में pvs 22 kω kilo ohms प्रतिरोध के द्वारा in1 से जोड़ा गया है in1 1kω kilo ohms के द्वारा ground gnd से जोड़ा गया है
यह connection के लिए circuit diagram है
सॉफ्टवेयर interface खोलें
plot window में voltage मापने के लिए in1 पर click करें
pvs = 1 volt के लिए सम्बन्धित in1 value 0309 volt है
एक नियत कार्य में
अब हम श्रेणी संयोजन में प्रभावशाली प्रतिरोध resistance को जाँचने के लिए एक परीक्षण करते हैं
इस परीक्षण में हम voltage दिखायेंगे जब प्रतिरोधक resistor श्रेणी में जुड़े हुए हैं
इस परीक्षण में
plot window में ccs check box चुनें voltage दिखाने के लिए in1 पर click करें
यह connection का circuit diagram है
जब 1 kω kilo ohms प्रतिरोधक resistor ccs और gnd से जुड़ा होता है तो मापी ccs voltage 0979v है
उसी प्रकार 560 ω ohms प्रतिरोध resistance के लिए मापी गई voltage 0543v है
1 kω kilo ohms और 560ω ohms प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन के लिए मापी गई voltage 1524v है
अब हम समानांतर संयोजन के लिए प्रभावशाली प्रतिरोध को जाँचने के लिए एक परीक्षण करते हैं
इस परीक्षण में हम voltage दिखायेंगे जब प्रतिरोधक समानांतर जोड़े गए हैं
इस परीक्षण में in1 ccs से जुड़ा हुआ है ccs एक प्रतिरोधक के द्वारा ground gnd से जुड़ा हुआ है
यह connection के लिए circuit diagram हैं
plot window में ccs check box चुनें voltage दिखाने के लिए in1 पर click करें
यह परीक्षण पहले 1000ω ohms प्रतिरोधक के साथ फिर दो 1000 ω ohms प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन के साथ किया जाता है
यह समानंतर संयोजन में 1000 ω ohm प्रतिरोध के लिए circuit diagram है in1 की मापी गई value 0952v है
यह दो 1000 ω ohm प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन के लिए circuit diagram है in1 की मापी गई value 0474v है
दोबारा यह परीक्षण पहले 22k ω kilo ohms प्रतिरोधक के साथ फिर दो 22 kω kilo ohms प्रतिरोधकों के समानांतर संयोजन के साथ किया जाता है
यह 22k ω kilo ohms प्रतिरोध के लिए circuit diagram है in1 की मापी गई value 2132v है
यह दो 22k ω kilo ohms प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन के लिए circuit diagram है in1 की मापी गई value 1063v है
इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने निम्न करना सीखा:
हमने निम्न दिखाना भी सीखा:
एक नियत कार्य में श्रेणी और समानांतर प्रतिरोधकों का संयोजन उपयोग करके प्रभावशाली प्रतिरोध मापें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
हम spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
spoken tutorial project भारत सरकार के mhrd के nmeict द्वारा निधिबद्ध है